ईमेल आई_डी भी लिखी हुईं हैं यहां पर।

इसेप्शन टेबल के ऊपर एक लैपटॉप रखा हुआ है।

यहां एक बसंत रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के बाहर लिखा हुआ है अह बफेट और लंच डिनर ।

टोकरियां वगैरा और चेयर्स भी रखी हुई हैं।

सामने सोनी की दुकान है दुकान के अंदर बहुत सारी एल_ई_डी वॉशिंग मशीन आर_ओ रखे हुए हैं।

एक लड़की जो कि लैपटॉप के साथ कुछ काम कर रही है और एक लड़का और एक मैम भी यहां पर बैठी हुई है।

बहुत सारी चेयर्स और किताब वगैरह--

पड़ी हुई हैं पर्दा भीं लगा हुआ हैं।

गुलदस्ते वगैरा भी रखे हुए है बहोत ही ज्यादा और सामने दीवार पर तो फोटो भी लगी हुई है।